पीले कलर का झोला है।

जो स्टील का कुर्सी है और वो उजले कलर का है।

और बच्चे भी बैठे हैं।

यह एक मेन रोड का दृश्य है।

और मोटरसाइकिल भी रह गए हैं।

कार उजाले कलर के है।

भी बहुत सारे कलर के हैं।

यह एक सब्जी मंडी का दृश्य--

एक आदमी छाता लिया हुआ है जो काले कलर का है।

एक झोला भी रखा हुआ है जो पीला और उजला कलर का है।

और बहुत सारा लाइट भी जल रहे--

बहुत सारे शीशे भी हैं जो उजले कलर के शीशे हैं।

एक बच्चा है जो खड़ा हुआ है।

मंदिर के बगल में बहुत सारे झंडे लगाए हुए हैं।

ऊपर लिखा है क्लासिक ।

सब अलमारी पर रखा हुआ है।

पिंक कलर का अलमारी है।

बहुत सारी तस्वीर भी छपे हुए हैं।

यह एक कॉलेज का दृश्य है।

ब्लेज ब्लू और पीले कलर का हैं।

चिकन स्टिक के ऊपर में सिल्वर लपटा हुआ है।

दो टेबुल लगाए हुए हैं जो उजले कलर के टेबुल है।

यह एक पूल का दृश्य है।

पुल जो बहुत बड़ा पुल है।

एक स्टील का रेलिंग दिया हुआ है।

एक पूल है जो नीचे बहुत सारे पानी है।

यहां पे दो फायर फाइटर रखें हुए हैं।

वो लाल कलर का है।

वो भी उजले कलर का है।

वह भूरे कलर के है।

दीवाल का रंग है पीला और उजाला कलर ।

जो लाल कलर का झंडा है।

यह एक स्टेज का दृश्य है।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

बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

जो उजाले कलर का टी शर्ट पहने हुए।

बगल में दो तीन लड़के हैं।

उजले कलर का ऐ_सी है।

यह दिन का समय है।

जो उजाले और बुलु कलर के पहने है।

यहां पर बहोत सारे रेलिंग रखे गए हैं वह सिल्वर कलर के हैं।

वो भी सिल्वर कलर के हैं।

बेड के बगल में दो आदमी खड़े हैं।

करकट से छाया हुआ है करकट के ऊपर दो पोस्टर लगाए हुए हैं।

स्टील के भी सुप है।

और बहुत सारे लेडीज हैं।

और बहुत सारे कूट में भी हैं।

दीवाल का रंग है लाल और उजाला कलर ।

जो टाइल्स लगाया हुआ है जो भूरा कलर का है।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

वो पूजले कलर का है।

एक टेंपू भी है जो काले कलर का है।

और बहुत सारे आदमी बैठे भी हुए है।

जो काले कलर का बो--

एक उजले कलर का पहना हुआ है।